एक खिड़की है उसमें एक पर्दा लगा हुआ है ग्रे कलर का और यहां पे रेड कलर का काउंटर है।

एक और वाटर पार्क है बच्चे बड़े बूढ़े सब नहा रहे है।

रोड है यहां पे ढेर सारी बाइकें हैं।

इसमें पानी भरा हुआ है और ब्लू कलर के लोहे की पाइप वाली रेलिंग है।